किसी फंक्शन का ये फोटो दिखाई दे रहा है यहां पे हमें।

पर्दे दिख रहे हैं लगे हुए उपर टिन शेड हैं।

कुछ लोग बाहर आते जाते सड़क पे दिखाई दे रहे हैं। कुछ बाइक्स पर बैठे हैं।

पेड़ की टहनिया दिखाई दे रही हैं।

टेट बैंक का एटीएम का बोर्ड लगा हुआ है यहां पे ।

ये योगा क्लासेस चल रह --

मास्क भी पहना हुआ है --

बगल में इनके रखे हुए हैं।

अभी दिखाई दे रहा है बहोत ही खूबसूरत बाहर से ये स्कूल लग रहा है।

बगल में थोड़े घास वगैरह भी दिख रहे हैं।